बिल्डिंग साइज बिल्डिंग का कलर ऑरेंज टाइप का है और दूसरी बिल्डिंग वाइट कलर की है।

का बोर्डर दिया गया है मैरून कलर से जो बरामदा है वो भी बहोत बड़ा और साफ-सुथरा नजर आ रहा है बगल में भी कुछ पेड़ लगे हुए हैं चेयर्स रखी हुई हैं।

सामने एक बिल्डिंग है जिसमें कांच के मिरर वगैरा लगे हुए हैं दरवाजें भी कांच के हैं।